और यहाँ पर दो व्यक्ति भी दिख रहे हैं। एक व्यक्ति बच्ची की फोटो ले रहा है और यहाँ पर बाजु में एक बच्ची भी बैठी हुई है जोकि कुर्सी पे बैठी हुई है।

और यहाँ पर सामने की और बोहोत सारे व्यक्ति दिखाए दे रहे हैं कुछ लेडीसे भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर चारों ओर बाउंड्री है और कुछ दीवारों की बाउंड्री है तो कुछ खम्भों की बाउंड्री भी हैं।

यहा पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जोकि मोबाइल हाथ मे लिए हुए है जिस ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और यहा पर एक रेड लाइट भी दिखाई दे रही है और शाम का समय लग रहा है।

दुकाने दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक बच्चा भी खड़ा हुआ है दुकान पर और यहाँ पर दुकानों पर बहोत सारा सामन रखा हुआ है और एक दुकान पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

किसी शटर दिखाई दे रही है और जो की अंदर का नज़ारा है शटर का। यहाँ पर टेबल कुर्सी रखे हुए हैं और टेबल पर वो --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

बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है। ग्राउंड मे बोहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे खड़े भी दिखाई दे रहे हैं जो कि नीले रंग के ड्रेस पेहने हुए हैं।

हॉस्पिटल का नजारा दिखाई दे रहा है | यहाँ पर बोहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहाँ पर बोहोत सारी लेडिसे भी दिखाई दे रहीं हैं एक लड़की बैठी हुई है चेयर पर।

ओर यहा पर बहोत सारी लड़किया दिखाई दे रही है जोकि योगा आसन कर रही है और दीवाल पर कुछ चित्र भी बना हुआ है।